जहां पे बहुत सारी अलग अलग तरह की छोटी साइकिले और बड़ी साइकिले रखी हुई नज़र आ रही है।

यहां पे बहोत ही खूबसूरत डिम लाइटों से डेकोरेशन करी हुई दिखाई दे रही है बाहर की ओर कुछ कारें भी खड़ी हुई है।

ये एक एस_बी_आई ए_टी_एम के बाहर की--

ये एक रात की फोटो दिखाई दे रही है और बाहर की ओर बहोत सारी कारे भी खड़ी हुई नजर आ रही है।

दो लड़कों के द्वारा उनकी शेविंग करी जा रही है।

यहां बीच में एक बड़ा सा झूमर भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये एक नदी की फोटो दिखाई दे रही है।

ये कुछ मालाओं की फोटो दिखाई दे रही है जिसमें कुछ ऑरेंज हजारे के फूलों की माला है।

यहां दीवारों पे वॉलपेपर्स भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और यहां दीवार की ऊपर एक मेन्यू कार्ड भी लगा हुआ नजर आ रहा है और कुछ आइसक्रीम के और पनीर टी पनीट के--

इनके हाथ में एक गोल्डन कलर की बांसुरी भी नजर आ रही है।

ये एक हॉल की तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पर एक लड़की और एक लड़का खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

और बगल में बहोत सारे अलग अलग तरीके के कुकीज के डब्बे भी रखे हुए नजर आ रहे हैं।

गाजर वगैरह भी रखी हुई है।